जिनके हाथ में एक स्टैण्ड पर एक कैमरा रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर पीछे कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक घर है जिसकी छत पर गोल-गोल गुंबज डले है और उसके चारों साइड मिनारे है गुंबज सफेद कलर के पुते है और उसके ऊपर पिंक कलर की मिनारे पुती है।

इस इमेज में एक फ्रूट्स का ठेला दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए नजर आ रहे है यहाँ पर एक केरेट रखी हुई नजर आ रही है नीचे--